आज हम simple animation के बारे में बात करेंगे
gimp animation के package को gap या gimp animation package कहते हैं जो animations films और movies के बारे में बहुत कुछ कर सकता है
लेकिन हम उसे बाद में cover करेंगे
germany में सबसे पुराने animations को डाऊमेनकीनो daumenkio या front cinema front cinema कहा जाता है
और अंग्रेजी में इसे flip book flip book या flick book flick book कहा जाता है
यह बहुत सारी images रखती है जो लगभग समान हैं लेकिन पेज दर पेज रूपांतरण हैं और अगर आप उनके माध्यम से flick करते हैं तो आपको थोड़ी हिलती हुई picture मिलती है
यह video यहाँ animation भी है और आप 25 images प्रति second पर slide show देख रहे हैं
यहाँ दो विज्ञापन हैं यह रॉल्फ स्टाइनॉर्ट की पिक्चर है और यह rob की है जो animated gif दिखाता है
मैं यहाँ मेरे विज्ञापन को सुधारना चाहती हूँ
मैं मेरे विज्ञापन में meet the gimp logo को दिखाना चाहती हूँ
अब मुझे इस image को मेरे desktop पर सेव करना है और मुझे सफलतापूर्वक animation बनाना है
अतः अब मैं image को लेती हूँ और इसको मेरे desktop पर so करती हूँ
मैं gimp के साथ image को खोलती हूँ
box इसे tool box पर खींचती हूँ और यह यहाँ है
मैं इसे यहाँ थोड़ा बढ़ाती हूँ
मूलतः इस image में कोई animation नहीं है लेकिन layer dialog में आठ layers का एक stack है
और ऊपर आप देख सकते हैं कि यह gif image है जो क्रमबद्ध और 80 by 80 pixels के आठ layers रखती है
यह image 256 भिन्न रंगों से बनी है
और इन रंगों को देखने के लिए dialog पर और colormap पर जाएँ
यहाँ आप वो रंग चुन सकते हैं जो इस image में प्रयोग हुए हैं और बहुत सारा नीला और कुछ अन्य रंग और प्रत्येक रंग एक index और html notation रखता है
gif images indexed की हुई हैं न की rgb images और इसलिए ये केवल एक सीमित रंग में उपलब्ध हैं
अब यहाँ frames को देखते हैं
आप देख सकते हैं कि पहली layer को background named दिया है और bracket में यह milliseconds में है यानी 5 seconds
अतः यह image सिर्फ 5 seconds के लिए दिखती है और फिर 100 मिलीसेकन्ड्स के साथ frames 234 का अनुसरण करती हैं और यहाँ replace का एक विकल्प है
frames को देखने के लिए मैं बस shift की को दबाती हूँ और पकड़ती हूँ और यहाँ आँख पर click करती हूँ और बाकि सारे frames को अदृश्य करती हूँ
और अब मैं उनको यहाँ ऊपर stack कर सकती हूँ
index रंगों को प्रयोग करना एक कमी है
आप यहाँ बहत सारे धब्बे देख सकते हैं क्योंकि ये tile सिर्फ उपलब्ध 256 भिन्न रंग रखती हैं
अतः यह यहाँ मेरी background image है
और यह एक अन्य है और वो अन्य image भी जो मैंने इस animation में प्रयोग की है और उस lesson के अनुकरण के बजाये यह drawing किसी के द्वारा बनायी गयी थी और मैंने यह उसकी अनुमति से किया है
images को आसानी से बनाने के लिए बाकि की images अन्य images का मिश्रण हैं
इस animation को दोबारा बनाने के लिए मुझे इस stack में से दो images लेनी हैं जो बहुत आसान है
यहाँ thumbnail पर click करती हूँ और mouse button पकड़ती हूँ और इसे टूल बॉक्स तक draw करती हूँ
और यहाँ मेरी पहली image है
अब यहाँ click करती हूँ और यह मेरी दूसरी image है
अतः यहाँ मेरे पास ये दो images हैं और मैं मेरा मूल animation बंद कर सकती हूँ और मैं इसका कुछ भी so नहीं करना चाहती हूँ
मैं meet the gimp logo logo को सम्मिलित करना चाहती थी
box इसे tool box तक खींचें और यह यहाँ है
मुझे इसे नीचे 80 by 80 pixels तक rescale करना है और फिर मुझे सफ़ेद रंग को background रंग की तरह सम्मिलित करना है क्योंकि इस image में काला बहुत ही कठोर होगा
और उसे करने के लिए मैं बस एक नयी layer जोड़ती हूँ सफ़ेद से fill करती हूँ और नीचे खींचती हूँ और add सफ़ेद मेरा background रंग है
layer dialog पर right click करें और flatten image चुनें
अब मेरे पास सफ़ेद पर एक flat meet the gimp logo है
अब image scale image पर जाएँ और मैं 80 pixels चाहती हूँ और interpolation में cubic अच्छा है scale पर click करती हूँ
और अब image फिर से स्केल हो गयी है लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही सौम्य है
rescaling के बाद आपको इसे sharpen करना है
अतः मैं filters enhance sharpen पर जाती हूँ
मुझे लगता है मुझे sharpness के साथ पर्याप्त उचाई तक जाना चाहिए
मुझे लगता है यह अच्छा है
अब मेरे पास तीन images हैं जो एक animation के लिए प्रतीक्षा में हैं
एक चीज़ जो मैं लगभग भूल गयी हूँ one है इन मूल images को सेव करना
पहली यह यहाँ है meet the gimp और इसे mtg80 xcf की तरह xcf करती हूँ
और यह भी यहाँ है
menu को access करने एक अन्य तरीका है कि image में right click करें और image mode और rgb पर जाएँ
फिर file और save as पर जाएँ
मैं इस image को मेरे base की तरह प्रयोग करुँगी
अतः मैं इसे दोबारा so करती हूँ और इस बार save as copy
और मैं इसे avatar xcf कहती हूँ
हाँ मैं इसका स्थान बदलना चाहती हूँ मैंने वह पहले किया है
file open पर जाएँ
अतः यहाँ यह मेरी मूल image है
और पहली चीज़ मैं इस image को meet the gimp logo के साथ मिलाना चाहती हूँ
और उसके लिए मैं इसकी एक copy बनाती हूँ और इसे logo के साथ मिलाती हूँ
इसे मेरे tool box में क्लिक करके और खींचके मैं इस image को चुनती हूँ और यहाँ मेरे पास मेरी layer है और अब मैं logo चुनती हूँ और इसे इस image तक खींचती हूँ और एक scrap layer प्राप्त होती है जिसका शीर्षक नहीं है और यह कभी सेव नहीं की जाएगी
अब यहाँ मेरे पास मेरी images के साथ दो layers हैं
और मैं इन दो steps के बीच तीन steps रखना चाहती हूँ
वह करने के लिए मैं transparency को मानिये लगभग 25% चुनती choose
अब मैं इस image को flatten करती हूँ और इसे avatar xcf image तक खींचती हूँ
बाद में मैं इन नामों को बदलूँगी
मैं untitled image पर वापस जाती हूँ edit और undo पर जाती हूँ
अब मैं transparency को लगभग 50% तक set करती हूँ
layer पर right click करें और flatten image चुनें और इसको खींचने से पहले मैं बस layer को frame x नाम देती हूँ और bracket में मैं type करती हूँ 100 milliseconds
अब मैं इसे avatar xcf तक खींचती हूँ और अपनी image पर वापस जाती हूँ
मैं ctrl + z दबाती हूँ और ऊपरी layer की opacity लगभग 75% तक बदलती हूँ
layer पर right click करें और flatten image चुनें
मैं इस layer को इस image तक खींचूंगी
और इस animation step के लिए इतना ही
अब मुझे logo को इस image तक खींचना है और यहाँ मेरे पास blending की पहली तीन layers हैं
और यहाँ अब मैं scrap layer को and करती हूँ और इसे सेव नहीं करती
अब हम देखेंगे कि इसने कैसे काम किया
लेकिन उससे पहले मैं इसे यहाँ सेव करती हूँ
और अब मैं filters animation और playback पर जाती हूँ
यहाँ here animation है
मैं play पर click करती हूँ
इसे प्ले करने से पहले मुझे सर्वप्रथम इन layers के names बदलने हैं
आप image word processing options के साथ अन्य कई image की तरह layers के नाम बदल सकते हैं
बस text को mark करें ctrl + c दबाएं और अगली layer पर double click करें और ctrl + v दबाएं और ज़रूरी चीज़ों को बदलें
अब सभी frames अपने उचित now रखते हैं
अतः मैं अपनी image पर जाती हूँ filter animation playback चुनती हूँ और यहाँ इसे देखती हूँ
आप मूल image देखते हैं
और यह अन्य image में रूपांतरित होती है लेकिन तेज़ गति से
यह थोड़ा धीमा हो सकता है
अतः मैं समय मानिये 200 मिली सेकण्ड्स तक बदलूँगी
तो दोबारा filters animation playback
मुझे लगता है यह बेहतर है
आखिरी चीज़ जो करनी है वो है इस image को index करना और इसे gif image की तरह सेव करना और यह आसानी से हो गया है
file save as पर जाएँ और फिर name के extension को gif से बदलें और save पर click करें
फिर मुझे एक विकल्प dialog मिलता है
और gif यहाँ इन layers को नहीं संभाल सकता
और यह सिर्फ animation frames को संभाल सकता है
अतः मैं इसे animation की तरह so करना चाहती हूँ
gif केवल ग्रे स्केल या indexed images को संभाल सकता है
अतः मैं इसे index रिजल्ट में बदलना चाहती हूँ
ये default settings हैं जो मेरे लिए काफी अच्छी है और मैं इसे बदल सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रुरत है
अतः मैं export पर click करती हूँ
यहाँ आप created with the gimp और loop forever देखते हैं
frame disposal में मैं one frame per layer बदलना चाहती हूँ
और ये अन्य विकल्प टिक नहीं हैं अतः उन्हें बिना टिक किये ही रहने दें क्योंकि यदि मैं समय को 5000 या 2000 milliseconds में बदलना चाहती हूँ तो मैं यह कर सकती हूँ
अब save पर click करें और हम परिणाम देखेंगे
और उसके लिए हम gimp नहीं बल्कि mozilla प्रयोग करेंगे
mozilla में यह उम्मीद के अनुसार कार्य करता है
अगले सप्ताह के लिए विदा लेती हूँ
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद